फोटो में एक बड़ा रेगिस्तान है बीच में छोटे छोटे टेंट है।

पीछे बहुत सारा बुफर एक व्हाइट कलर की लकड़ी की टेबल है।

यह फोटो में एक बहुत बड़ा घंटा घर है सामने की तरफ एक घडी है बिच में एक लाइट है निचे की तरफ बहुत सारी खिड़कियां हैखिड़की में बहुत सारा छज्जा है।